में सामने एक जिम हॉल है। जिम हॉल में एक व्यक्ति --

मोबाइल से सेल्फी खींचता हुआ --

दिखाई दे रही है और वहाँ --